और रीवर के पानी में एक ब्रिज का पीला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हैं।

यह एक जावेद एंड हबीबी हेयर एंड ब्यूटी सेंटर है जिसके काउंटर पे एक सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है।

लिखा बैनर लगा हुआ इसकी छत पर पंखे लगे हुए हैं तथा कॉर्नर पर लाइटें लगी--

जिसके ऊपर टेबलें आरी गिरी हुई है और टेंट के बगल में पेड़ लगे हुए हैं तथा साइड में एक घर है।